सवारियाँ जाती हैं जैसे की बस अड्डा है। बस अड्डे में काफी जगह होती है और जिसमे बसों मे काफी लोग बैठकर जाते हैं और --

बाहर निकाल सकते हैं। डॉक्टरो में इतनी न्वोलेज होती है की वो हर चीज की दवा जानते हैं और जैसे की डॉक्टर उम एक अच्छे --

कोई है नहीं और यहाँ पर ये इतनी डिजाईन से बना हुआ है और स्विमिंग में काफी लोग हैं यहाँ पर।

ये खड़ी भी होती हैं और बस मै जो एक कनेक्टर होते हैं ओ जोकि सबके टिकिट अ लेते हैं और जैसाकि--

हमें देखके रोड क्रॉस करना चाहिये और रोड जो क्रॉस होती है तो --

ये यहाँ पर ये जो जगह है। यहाँ पे घूमने की जगह है जैसे कि हरी घांस है।